यहां पे बहुत सारे परछन खड़े में एंड परछनो की लंबी लाइन लगी हुई है।

इस पिक्चर में हमें एक एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है जहा ह--

एंड इस पिक्चर में जो की बुद्ध वगैरह को मानते जो पूजा करने--

इस पिक्चर में हम एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहे हैं।

एक दो पर्सन मीटिंग कर रहे हैं एंड एक पर्सन बैठा हुआ है एंड नीचे टाइलें लगी हुई हैं जोकि व्हाइट एंड --

एंड पानी के बोतल वगैरा नजर आ रही है एंड फैन वगेरा नजर आ रहे हैं एंड फ्रिज दिखाई दे है जो की ऑटो कट है एंड हॉर्लिक्स का डब्बा दिखाई दे रहे हैं।

जो की इस पिक्चर में बेड वगैरा लगाया है। बेड जो है वह ब्राउन कलर का है।

ऐंड जो गद्दे है वो एंड रेड कलर के है एंड तीन पिलो रखे हुए हैं एंड इस पिक्चर मे पंखा दिखाई दे रहा है।